किसी को भी कोई नुकसान बिजली से ना हो। यह सभी लोहे और तारों से बना हुआ हैं।

चिप्स कुरकुरे पेप्सी लिमका आदि सभी चीजे मिलती हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों की टोफियां भी मिलते हैं।

शहीदों की फोटो चिपका रखी है तथा भारत मां की पेंटिंग बना रखी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक बोहोत ही बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है है। समुंदर के बीचो-बीच दो नाव चला रहे हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक फॉर्चून की दुकान है। यहां पर --

साबुन सर्फ तेल नमक चीनी बिस्किट कोलगेट --

जैसा कि मैं देख पा रही हू यह एक छोटा सा मोल है इसका नाम इसपूठी फेमिली बजार है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक कंप्यूटर शिक्षा संस्था है या तो फिर एक कार्यालय है।

यह अपने चित्र कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी बच्चे ने फ्राक पहना हुआ है।

सारे लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नीला और सफेद गुब्बाडा भी दरवाजे पे लगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर अभी एक मजदूर ईटा की चुनाई करके घर को बना रहा है। यहाँ पर बांस --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक सलून है। जिसका नाम बाल दाढ़ी स्पा एण्ड सलून है।

यहां पर काफी सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। यहां पर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक राशन की दुकान है। यहां पे कोलगेट --

ने एक चश्मा पहन रखा है तथा यहाँ पर छोटे छोटे हरे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह श्री राम जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर एक बगीचे के बीचो बिच --